यहां पर सामने एक पर्दा भी लगा हुआ है यहां पर कुछ लोग भी उपस्थित हुए हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है।

मंदिर में एक महिला जा रही है।

यह दृश्य एक खुले मैदान का है।

भगवान शंकर की प्रतिमा लगी हुई है।

जिसमें छत की सरिया लगाई हुई है बजरी लगाई हुई है।

पेट्रोल की टंकियां दिखाईं दे रहीं हैं।

सभी सामान मिलते हैं या बुक शॉप है।

जहां पर एक आदमी खरा है।

छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं और बड़े बड़े पौधे भी है।

ये बहुत ही हरे हरे हैं।

इस दृश्य स्कूटरी के साथ साथ मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

पांच बंदे खड़े हुए भी हैं।

फंक्शन की तैयारी हो रखी है। हॉल का बहुत अच्छा सजावट हो रखा है।

यह दृश्य पैलेस का है जहां पर--